यह एक फैक्ट्री के आगे का दिख रहा है जहाँ बहुत सारे ट्रक अ बहुत सारी जे. सी. बी. अअअ कुछ सामान को उठा रही है और बहुत बड़े-बड़े अ उम मशीन यहाँ पर दिखाई दे रही है।

एक बोर्ड लगाया है जंगल का और एक गेट भी है और उसके आगे काफी पेड़-पौधे और छोटे मोटे जंगली पेड़ पोधे नज़र आ रहे हैं।

यहाँ बड़े-बड़े पेड़-पोधे है और दो जंगली भैसे भी नज़र भी आ रही है और पर जमीन पर काफी जंगली पोधे ऊगे हुए है जिनसे लगता है की यह अ जंगले का क्षेत्र है।

यह किसी इमारत का द्रश्य है इसके आसपास बहोत ही सुंदर पार्क बनाया गया है और उनकी कटिंग भी गई है आसपास बड़े-बड़े पेड़-पौधे नज़र आ रहे है और यह किसी चीज़ का मुख्य द्वार लग रहा है।

यह कोई पुरानी बिल्डिंग लगती है जिसके आस-पास छोटे-मोटे पेड़ उ पौधे उग रहे है और उसके पास मे ही काफी एक टावर नज़र आ रहा है उसके आसपास में भी छोटी-मोटी झोपड़ियाँ है।

यह एक पार्क का सीन लगता है जहां पर बड़े बड़े पेड़ पोधे नज़र आ रहे है पानी से गार्डन की सिंचाई हो रही है और आस पास छोटे मोटे पेड़ो के लिए भी फेंसिंग बनाई गयी है।

यह किसी अअअ रात्री में एक पार्क का द्रश्य है जहाँ पर लाइटे लगाई गई है एक मूर्ति भी स्थापित की गई है हरे-भरे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है लोगो के बैठने के लिए भी यहाँ जगह बनाई हुई है।

फिसल पट्टीयो का रंग ब्लू कलर का है और ये बहोत ही बेहद खूबसूरत लग रही है।